अलग-अलग रंग का फूल सब है वहां पे।

टेबुल उबुल है उजला कलर का फूल है।

सैलून है यहाँ पे भी --

गैस सबका ये है सलेंडर अर वाला सा।

इधर मोटा-मोटा है पतला है काला कलर का है।

एगो होटल है बहुत कुर्सी है।

ठलिया है बकेट है न्यूज पेपर --